कूड़ा का एंच फणा हम तें कुछ सरिया दिखेण लगी कुछ लाखड़ा पटेला दिखेण लग्यां दिखेण से लग्दु ये कूड़ा मा लेंटर पण लग्युं।

ओर-पोर हमथे कुछ लोग छन दिख्येण लग्यां पार फंडे हमथे कुछ बड़ी बड़ी ईमारतन दिखेण लगीं जूका एैंच एक झंडा सा टंग्यु दिखेण चु रात को समय लगणु।

यह चित्र मा हम तैं स्टेज दिखने लग्युं का नीसाण फणा हम त स्विच बोर्ड दिखेण लग्यां कुछ तार दिखेण लग्यां एंच हम त एक हरी दरी दिखेण लगीं।

पेथर हमतें एक नुन्याल एक बेरवान दिखेण लगीं पेथर हमतें बडु कूढु दिखेण लग्युं जेका उंडे-फुंड कुछ इंट और एक बडु दरवाजु दिखेणु।

जणा हम तैं बहोत सारा लकड़ा का पट्टान दिखेण लग्यां कुछ सरिया दिखेण लगीं और कुछ गिट्टी बजरी कुछ रोड़ी दिखेण लगीं कुछ लोग छन जू दिखेण से मिस्त्री लगण लग्यां दिखेण से लगदु यी लैंटर छन डालण लग्यां।

अगाड़ी हमथे एक बड़ी ईमारत दिखेण लगीं जुफर लाल अ सफेद रंग अयूँ बड़ी बड़ी खिड़कीयन दिखेण लगी अर एैंच एक बडू बोर्ड दिखेणु।

ये चित्र मा हम तें एक बड़ी दुकानि दिखेण लगी जे का भितर हम तें भोत सारा कपड़ा दिखेण लग्यां।

और वो माइक पर कुछ बोन छ लग्युं फणे बिटि हम त कुछ और नौनियाल छन दिखेण लग्यां जू का हाथम पिआनो वगैहरा छन पैथर हम त दिवाली पर एक बड़ू क्रॉस छ दिखेण लग्युं।

सड़की किनारा हम त बड़ू बोर्ड दिखेण लग्युं जै पर यात्री विश्राम गृह छ लिख्युं। पार फणा हम त कुछ डाला भी दिखेण।

यु दिखेण से हाथी की मूर्ति लगण लगी यु नेन-नौनियाल वे का हाथी का सुठ पर छ बैठ्युं ऐथर फणी हम तें कुछ झाड़ी झुडी दिखेण लगी कुछ बड़ा बड़ा डालान दिखेण लग्यां।